यखमा जी एक आदमी च यखमा जी एक दुकान च यखमा जी कई सारू सामान च रखयूं चिप्स कुरकुरा छन लटकियाँ जाली बि च यखमा जी।

यख मा जी एक आदमी छ यख मा जी पिछाड़ी एक बहोत बड़ु सूंदर सु मंदिर छ।

यख मा जी कई सारा लोग छन यखम एक टेंट कर छ लग्युं यख फण कई सारा लोग भी बैठ्यां छन कुर्सी मा जी।

यखम कुर्सी भी च यखम रंग बिरंगी लड़ी छन लगीं फूल छन लग्याँ यखमाजी टियूबलाइट भी छ लगीं टेंट भी छ लग्युं हरा भरा डाला छन।